और लगता है ये सारी रेत को किसी बिल्डिंग की मरम्मत के लिए इकट्ठा किया गया है। एक आदमी है जो चुपचाप बैठा हुआ है।

सभी ये सोच रहे हैं लगता है कि इस कार को किस तरह से बनाया जाए।

ड्यूटी को बड़ी खूबसूरती से निभाता हुआ नजर आ रहा है।

ये बंगाल का दृश्य नज़र आ रहा है। यहाँ पे तीन लोग किसी बिल्डिंग में सरकारी बिल्डिंग में जाने की चेष्टा कर रहे हैं।

ये बच्चों की फेवरेट मिठाई लेके उस मेले में घूम रहा है।

यह एक पोस्ट ऑफिस का दृश्य है जहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल लेके पोस्ट ऑफिस के अंदर जा रहा है।

सामने शांडिल्य जिम की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बाहर की दीवारों पे कांच लगा हुआ है।

सामने विदुत केंध्र मुरादाबाद का दृश्य है बिलिंग टूटी हुई है। टूटी-फूटी बिलिंग में एक लाईट जली हुई है और शायद अंदर ट्रांसफोर्मर भी रखा हुआ है।

इ रिक्शा बिल्कुल नया है और पार्किंग क्षेत्र में शांति से खड़ा किया गया है उसके पीछे एक पीछे स्टेपनी लगी है जो पीले रंग की है।

मकानों के ऊपर टंकिया लगी हुयी हैं । पेड़ पौधे फूल पौधे भी काफी मात्रा में नजर आ रहे हैं ।